सामने में शिवलिंग दिख रही है।

खड़ा है जिसने पीले कलर का टी-शर्ट पहना है लाल रंग का बैग लिया हुआ है।

बड़ा सा पक्षी दिख रहा है और झूले लगे हुए हैं।

जिम दिख रही है मशीन दिख रही है।

सामने में तीन कार दिख रही है।

सामने मे रॉयल इंफायनायट का शोरूम दिख रहा है।

सामने पानी दिख रहा है बहुत सारा समुंदर समुंदर है।

फील्ड दिख रहे हैं आसमान दिख रहे हैं।

हम बटरी दिख रही है।

बोलेड में लाल रंग का कुछ खाने का है।

घर पे पीले रंग का लाल रंग का पेंट हुआ है।

हमने कार दिख रही है।

पे अनमोल लिखा हुआ है।

हमारा तीन बच्चे तीन चार बच्चे दिख रहे हैं।

शीशा दिख रहा है साउंड स्पीकर रखा हुआ है।

जिसमें छोटे-छोटे लाल पीले रंग के फूल दिख रहे हैं बहुत सारे आलूम दिख रहे हैं।

और हरे रंग का छोटा-छोटा हरा घास दिख रहा है।

ये नीचे का डिजाइन कमल का बना हुआ है लाल रंग का।

पीले रंग का पेंट हुआ है।

भगवान की प्रतिमा बनी हुई है कुड़सी दिख रही है।

कुर्सियां दिख रही है ब्लू कलर में --

पुरानी तरह का चदरा दिख रहा है घर दिख रहा है सामने।

पानी दिख रहा है बहुत सारा पहाड़ दिख रहा है।

और पेड़ बना हुआ है चॉकलेटी कलर का है।

में घर बना हुआ है जिस पे ब्लू कलर का पेंट हुआ है।

तीन चार कारें दिख रही हैं।